और इधर एक औरत खड़ा हुआ है।

पाइप अह उधर शीशा लगा हुआ है इस--

रूम का कलर है येलो एवं व्हाइट ।

चित्र में दिखाया गया है गणेश भगवान का--

शेड के किनारे मेट से घेरा गया है मेट का रंग है लाल।

साइड में पांच पुरुष बैठे हुए हैं कुछ महिला पीछे हैं।